यहां पर एक बच्ची बैठी हुई है और इसका कलर बहुत अच्छा है आसमान में बहुत नीला नजर आ रहा है।

नज़र आ रहे है जिसका कलर ग्रीन है और आसमान बहुत नीला नजर आ रहा है यहां कुछ लोग बैठे हुए है।

इस तस्वीर में बहुत सारी इमारातें नजर आ रही हैं और उसके बाज़ू बहुत सारे झाड़ नजर आ रही हैं यहाँ पर एक आदमी रोड पर जा रहा है और वो यहाँ पर--

इस तस्वीर में एक इमारत दिखाई दे रही है जो नीचे की तरफ सीडीया दिखाई दे रहे है और वहा नीचे एक तलाव नज़र आ रहा है।

तस्वीर में एक मंदिर नज़र आ रहा है एक औरत जो पुजा करने के लिए अंदर जा रही है।

इस चित्र मे पानी गिर रहा है और बहुत से सारे खम्भे लगे हुए है जो सीडी की तरह नज़र आ रहे है।

और यहाँ पर बच्चे बड़े नज़र आ रहे है और इसके पीछे एक इमारत दिखाई दे रही है और यहाँ पर पेड़ पौधे नज़र आ रहे है और बच्चे हरियाली में खेल रहे है।

पेड़-पौधे लगाए हुए है जो अलग अलग किसम के फूल दी देते है और यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो झाड के नीचे बैठी हुई है।

और बाजू में एक खंबा लाइट का नजर आ रहा है यहाँ पर छोटे छोटे से पेड़ है और वो बहुत खूबसूरत है।